जिसको रिपेयर किया जा रहा है।

जहां पे बहोत ही ढेर सारा अंदर सामान रखा हुआ है। जैसे शैंपू वगैरह है।

इस तस्वीर में एक हिरण की तस्वीर है जो ब्राउन कलर का है।

उसने डार्क ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है। पीछे --